जो कि मूर्ति को टच कर रहे है और वो भी ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए है।

इस तस्वीर मे एक आदमी अ एक आदमी कसरत करने की मशीन को उठाया हुआ है और हा वो व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और मरुन कलर का--

इस तस्वीर में एक बच्चा खड़ा है जो की व्हाइट आ प्रिंटेड शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे फूल की--

पौधे लगे हुए है उसमे फूल लगा हुआ है पीला कलर का और अ और आसमान व्हाइट है और अ बहुत सारे --

अ सामान रखी हुई है और एक अ लड़का खड़ा है जोकी व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ और हाफपैंट पहना हुआ है पिंक कलर का हाथ मे कुछ सामान लिए हुए है।